एक महिला है जो कत्थक की ड्रेस पेहन के खड़ी है नाचने का पोज बना के खड़ी है और उसके गले में एक माला है और यह स्टेज पे खड़ी है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टेज है।

यह एक सैलून है जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और एक व्यक्ति द्वारा उसके बाल काटे जा रहे हैं और ऊपर झूमर लगे हुए हैं। काफी सुन्दर सैलून है सामने मिरर है और ये लेडी चेयर पर बैठी है।

हैल्प होती है। स्टूडेंट मतलब यहाँ पे लोगों को इलाज इलाज मिलता है। मेडिसिन वगैरह --

यहाँ पे एक बस दिख रहा है जिसपे जय माता दी लिखा हुआ है और एक साईकिल और दो तीन व्यक्ति जो रोड से जा रहे हैं ऊबड़-खाबड रोड है।